बहुत बड़ा सा बस स्टैंड है यहाँ एक बस लगी हुई है कृषणा रजत नाम लिखा हुआ है बहुत सारे बस हैं एक आदमी एक मोटर साइकिल पे दो आदमी है पास में एक लेडीज जा रही है।

यह पार्क है बहुत अच्छे से मूर्ति बना हुआ है आदमी है घोड़ा है जलपरी का।

राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का ऑफिस है देखने से पता चल रहा है जल जमाव के कारण यहाँ बहुत परेशानी होती होगी। होगी।

ये बाहरी रास्ता है यहां जाने के लिए आदमी लोग के लिए निकलने के लिए बाइक उइक लगा हुआ है।

बर्थडे पार्टी है स्टूडेंट लग रहा है।

बहुत ही ज्यादा जो है बिज़नेस एकदम ई लोग दे रहें हैं बकरी पालन के लिए। इससे पता चलता है की छोटा-छोटा बकरी लोग को बड़ा करने में --

घेरा हुआ है दुई लोग बाइक से जा रहें हैं।

पेड़ -पौधा है छत पे पेड़ लगा हुआ हरा भरा हुआ है काफी सुंदर सा नजारा लग रहा है रोड है बड़ा-बड़ा घर है ड्रम --